इससे पता चलता है कि कोई कर्तब करने की तैयारी में जा रहा है।

करने का बहुत से बहुत डिजाइन दिखाया गया है इसमें उसका पिक लगाया गया है बाल के किस किस तरह का बाल का कटिंग किया जाता है उस उस तरह का फोटो उसमें लगाया गया है जहां पर दुकानदार ग्राहक की ब--

ऐसा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि सभी राज्य में कहीं कहीं भी गोपालगंज हो सकते हैं।

फिर भी लगी हुई है जहां से ठंडी ठंडी हवा आती है।

कोको कोला लक्ष्मी होटल है रेस्टोरेंट --

या फिर इसको किसी प्लांट के बाहरी भाग या मुख्य द्वार का यह तस्वीर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में रखे हुए है और ये घूमने वाला सोफा दिखाई दे रहा है। जो काफी सुंदर और काले रंग का है।

ऐसा यह प्लेग्राउंड बना हुआ है जिसको--

दुकान ओपनिंग हुआ है बट इसमें ग्राहक की संख्या बिलकुल जीरो है।